इनका रंग पीला लाल गुलाबी हरा ब्लू है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य दिख रहा है जहां पर तीन लोग खड़े हैं।

एक फोनपे का चित्र भी रखा हुआ है यहां पर एक सफेद रंग का ए_सी लगा हुआ है।

जिनका रंग हरा है कुछ पौधे दिख रहे हैं जिनका रंग लाल है।

ऑरेंज और ग्रीन कलर के पर्दों से सजाया गया है।

यह एक स्कूल का दृश्य है जिसके ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने हरे रंग का ड्रेस पहना हुआ है।

और यहां पर फूलों से सजावट की गई है करकट का कलर ब्लू है।